इस दृश्य में एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रही है जिस रेस्टोरेंट के अंदर टेबल और चेयर भी नजर आ रहे हैं ।

बहोत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे है।

बहुत सारे लंबे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।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

एक शेटर गिरी हुई भी दुकान दिखाई दे रही है।

इस दृश्य में एक जनरल स्टोर नजर आ रही है।

दो लेडी टीचर भी दिखाई दे रही है जिन्होंने भी कॉस्ट्यूम पहन रखा है।

इस दृश्य में एक सैलून दिखाया गया है।

काउंटर पे थ्री सिक्सटी सैलून ए फैमिली सैलून लिखा हुआ नजर आ रहा है।

जिम में बहोत सारी जिम की मशीने रखे हुए नजर आ रहे हैं जैसे ट्रेडमिल्स डंबल्स और भी बहुत सी मशीने।

यह दृश्य रानी ताल डैम का है।

यह दृश्य में बहोत सारे लोग नजर आ रहे हैं।

टेबल्स के ऊपर रखे हुए स्पून ग्लासेस टिसू भी दिखाई दे रहे हैं।

तीन व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

कुछ व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

उन्हों के हाथ में एक कटी हुई बॉटल --

इस दृश्य में एक बनती हुई मेंशन दिखाई दे रही है।

बहुत से व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

इस दृश्य में एक डेयरी फार्म नजर आ रही है।

बस्तर डेयरी फॉर्म बैनर भी लगा हुआ नजर आ रहा है।

एक बच्चा भी दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में एक मार्बल की शॉप दिखाई दे रही है।

स्टेज के ऊपर एक रेड एंड सिल्वर कलर का सोफा रखा हुआ नजर आ रहा है।

इस दृश्य में एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे व्यक्ति उस पत्थर के ऊपर बैठ कर योगा करते हुए नजर आ रहे हैं।

रिजॉर्ट में एक स्विमिंग पूल भी नजर आ रही है।

उस स्विमिंग पूल के बगल में एक स्टेज दिखाई दे रही है।

इस दृश्य में एक बिल्डिंग नजर आ रही है।

शॉप के बाहर बाथरूम के पेंट सेंटेक्स पाइप झाड़ू और भी बहोत सी चीजें रखी हुई नजर आ रहे हैं।

इस दृश्य में एक शॉप नजर आ रही है।

एक व्यक्ति खड़ा नजर आ रहा है जिसने ब्लैक कलर की वास्कोट पहनी हुई है।

घर के बाहर बैनर लगाकर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

छोटे छोटे घास भी दिखाई दे रहे हैं।

लैपटॉप के ऊपर एच पी का लोगो लगा हुआ नजर आ रहा है।